हई सैलूने के दूकान ह आदिमिया एगो खड़ा बा हई काँचे के पूरा लागल बाटे पोस्टर से लिखाइल बाटे अउरी लाल कलर से रंगाइल बा अउरी पोस्टरवा --